टमाटर की पेड़ पर दवाई बी डाल रहा है और कुछ टमाटर फूल भी रहे हैं और कुछ सुकड़ भी रहे हैं यहाँ पर पता नही क्या कर रहा है।

जंगल में एक आदमी घूम रहा है दोनों साइडस से रोड भी है और बहुत सारी हरियली भी लगी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है नारियल का पेड़ भी लगी है सुभा दार पेड़ लगे हुए हैं एक घर दिखाई दे रहा है आदमी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे पता नही कोन कोन सी कार लगी हुई है बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर कार रखी और यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है लाल कलर का निसान भी है और कुछ नहीं दिख रहा--